में जो है व्हाइट कलर से कुछ लिख के दिखाई दे रहा है।

में बहुत सारे पेर भी दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में।

ग्रीन कलर का भी दिखाई दे रहा है और पिंक कलर वाला भी दिखाई दे रहा है।

इसमें सोलर प्लेट भी दिखाई दे रहा है और फेंसिंग भी दिखाई दे रहा है।

में बहुत सारे स्त्री बच्चे लोग दिखाई दे रहा है ब्ल्यू कलर शर्ट और ग्रे कलर स्कर्ट और लॉन्ग पेंट पहना हुआ दिखाई दे रहा है।

रेड कलर में अनार भी दिखाई दे रहा है।

उसमे टेबल दिखाई दे रहा है ग्रे कलर में।

ये जो है एक घर है और घर को जो है ऑरेंज कलर करके पेंट करके दिखाई दे रहा है।

इसमें जो है बहुत सारे इयर रिंग्स दिखाई दे रहा है गोल्डन कलर में।

दो ठो फ्लावर स्टैंड दिखाई दे रहा है इसमें।

यह कारपेट पिंक और येलो कलर का डिखाई दे रहा है।

दो थू पोस्टर दिखाई दे रहा है इसमें।

इसमें में जो है वॉलीबॉल कोर्ट दिखाई दे रहा है।

मुझे क्लाउड दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर में और भी दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में।

दुकान दिखाई दे रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर करके।

इसमें जो हैं बहुत सारे लोग दिखाई दे रहा हैं लड़की भी दिखाई दे रहा हैं और लड़का भी दिखाई दे रहा हैं इसमें।

और ये जो है शादी पार्टी है।

यह जो है घर भी दिखाई दे रहा है घर में जो है रेड कलर का ईटा यूज करके दिखाई दे रहा है।

में जो है वाइट कलर का प्लास्टिक भी दिखाई दे रहा है।

इसमें फ्लावर पोट भी दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का।